एंड इस व्यक्ति ने वाइट एंड ब्राउन कलर की टी शर्ट पहन रखी है एंड इस इस होप में --

लाल कलर का कोई कपड़ा बांध रखा हैं एंड इसमें चैम्बर के गेट लगे हुए हैं।

एक झरना भी गिर रहा है एंड उपर काफी सारे बादल भी दिखाई दे रहें हैं ।

लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे फूलस रखे हुए हैं।

इस इमेज में हमे एक काफ़ी बड़ा हाउस नजर आ रहा हैं इस जोकि ब्लू एंड वाइट कलर का हैं इस --.